सामने भोलेनाथ की मूर्ति दिखाई दे रही है।

उस मेले में बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे रही हैं।

उस रेस्टोरेंट का नाम विकास रेस्टोरेंट है।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

इस फोटो में एक दुकान दिखाई--

इस फोटो मे एक कैफे दिखाई दे रहा है।

ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

ऑफिस में बहुत से कम्प्यूटर दिखाई--